इस पिक्चर में हमें फोटो देख रहे हैं और फोटो में पीछे ऑटो खड़ा हुआ है ऑटो का कलर पीला और काला है।

इस पिक्चर में हम एक चर्च को देख रहे हैं चर्च के पीछे दो प्रकार की कला--